इसमें और एक कपड़े का शोरूम बना हुआ है इसमें आगे बहुत सारी टी शर्ट लगाई गई हैं।

सड़क की निकली साइड को बहोत सारे बहोत बढ़िया बढ़िया मकान बने हुए हैं ऊपर को भी एक मकान बना हुआ है और सड़क में कुछ गाड़ियां साइट --

इसमें एक बहुत बड़ा समंदर दिखाई दे रहा है समुद्र के अरे परे लोहे का पुल बना हुआ है।

और इसमें ऊपरको आसमान दिखाई दे रहा है जो बहोत साफ है।

इसमें लेंटर के ऊपर एक हाल दिखाई दे रहा है। हाल में सी_सी_टी_वी कैमरे और उसके अंदर सामान रखा गया है।

इसमें एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क से बहोत सारी गाड़ियां जा रही है।

बोहोत सारी लाइट की तारे गई हुई है और सामने--

इस कमरे के अंदर लाइट भीं लाई हुई हैं।

बहुत सारे गुब्बारे लटकाए हुए हैं और--

कुर्सी के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है जिसने हरी कमीज और पैंट पहनी हुई है और चश्मे लगाए है।

एक नीचे डब्बा रखा हुआ है और पार को बहोत सारा सामान बेचने के लिए लगाया है और इस--

कुछ खंभे भी लगे हैं इसमें--

आसमान दिखाई दे रहा है जिसमें--

दो लाइटें जली हुई हैं और चारों ओर अंधेरा ही--